एक चेयर लगी है जिसपे ए एक लेडीज बैठी--

और बगल में हरे पेड़ है।

कुर्तिया लईगी जींस पैंट टी-शर्ट और बच्चों का फ्रॉक हैं और कुछ लड़कि का स्टेचू --

एक बहुत सारे मंदिरे है जो मंदिरो में कुछ मैदान भी है और मैदान में कुछ हरा घांस भी जमा हुआ है।

अ और रेलिंग की गयी है और कुंड में कुछ पानीया भरी है और एक औरत खड़--

बड़ा सा मैदान है इस मैदान में हरा घांस जमा हुआ है और कुछ लोग बैठे हुए हैं और खड़े हुए हैं अगल बगल कुछ बिल्डिंगे बनी है और सा हरा भरा पेड़ पौधा--

ये एक बड़ा सा नहर है जिस नहर के ऊपर पुल बनी है और एक टावर खड़ी हुई है और मैदान है जिस में हरा घास जमा हुआ है हरे पेड़ पौधे हैं।